ये एक अअअ लोबी है | लोबी में लाइट लगी है कलर येलो है एक स्विच बोर्ड है | एक --

एक शॉप है उसके सामने में स्कूटी खड़ी है एक आदमी उसके बाहर खड़ा है।

इ-रिक्शा खड़ी है रोड पर और उसका कलर ऑरेंज है और साइड में --

एक आदमी इसके अंदर कुछ काम कर रहा है | ई इ-रिक्शा खड़ी हुई है उसके साइड में एक आदमी खड़ा है और एक लेडी खड़ी है उसके साइड में |